यहाँ पर एक बैंक का ए_टी_एम हैगा

यहाँ पर एक इस्टेज बना हेगा यह काफी बड़ा इस्टेज हेगा और इस इस्टेज के उपर काफी सारी मुर्तिया बनी हुई --

यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है ये काफी बड़ी यूनिवर्सिटी हैगी और इस यूनिवर्सिटी में काफी दूर दूर से बच्चे आते है पढ़ने के लिए और यहाँ बाहर कुछ लड़के खड़े हुए है।

नया हेका हे ये और काफी अच्छी दुकान है दुकान के ऊपर दुकान का --

ये एक ऑफिस हेगा ऑफिस काफी बड़ा हेगा ऑफिस में एक टेबल रखी हुई हेगी।

काफी से जावत की गयी हे गी और लाइट लगी हुई गी ये गेट बना हुआ हे इसमें काफी सरे लाइट लगी हुए हे | बहुत ज्यादा लोग हे इस साइड में कुर कुर्सियां लगे हुए गी |

ये एक चर्च हैगा और यहां पे स्टेज बना हुआ हैगा स्टेज के सामने काफी सारी चेयर रखी हुई है चेयर रेड कलर की है और चेयर के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए है।

बहार बोर में भर के राखी है | सब्जिया। राकी हे प्यास अल्लू और काफी सरे चीस रखे हुए हे अंदर बी काफी सरे समान हे कब --